हॅम्पर रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें मैकडॉनल्ड्स का--

और खाली रोड भी नज़र आ रहा है।

पेट्रोल पंप पूरा खाली नजर आ रहा है और कुछ नीले रंग का यू_पी_आई नजर आ रहा है।